पहाड़ी एरिया में वो ओ ऐसे पर्यटक स्थल में घूमने गया है और--

यह एक नदी की तस्वीर है जहाँ आस-पास में कई सारे पेड़-पौधे हमको नज़र आ रहे हैं।

यह कोई कार्यक्रम के दौरान एक सजाया गया कोई जगह है जो की--

जो कि देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है जहाँ से रोशनी भी अंदर आ सके इस तरह से उसको बनाया गया है।

यह एक तालाब की तस्वीर हम देख सकते हैं। आसपास के क्षेत्र बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसको--

जो की बहुत ही सुविधाजनक और बेहतर लग रहा है.

आजकल हम देखते हैं कई सारे लोग फोटो खींचाने के लिए उतावले होते हैं और हम भी खिंचाते हैं।

हम देख सकते हैं यहाँ नृत्य करते हुए एक तस्वीर यहाँ पास हमे दिखाई दे रही है।

यह एक नाई की दुकान की तस्वीर है जहाँ हम अपने बाल कटाने के लिए जाते हैं जहाँ--

जैसे कि अलग-अलग प्रकार के हम कटाते हैं जो कि हमारे मनपसंद होती है।

यहाँ एच. डी. एफ. सी. बैंक की तस्वीर है जहाँ नीचे ए. टी. एम. नज़र आ रहा है जहाँ हम देख सकते है बाहर--

लग रहा है जहां हम अपने कपड़े भी सिलवाने देते हैं।

और आसपास पहाड़ी क्षेत्र भी हमको नजर आ रहा है। जहां हरे भरे जगह और कई सारे पेड़ पौधे--

हम देख सकते हैं यहाँ एक--

हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करती है और हमें आसपास के क्षेत्र में कई सारे पेट्रोल पंप देखने को मिलता है।

यहाँ हम देख सकते है एक कॉफी और--

और यह दिखने में बहुत सुंदर और हरा-भरा लग रहा है।

जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बढ़िया--

झोपड़पट्टी हम जिसे बोल सकते है ठहरने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ हम घूमने जाते हैं।

तो हमारे रुकने के लिए या पाँच मिनट टाइम बिताने के लिए यह जगह अच्छा होता है।

हम भी चाहते हैं वर्क आउट करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है।

यहाँ हम देख सकते हैं कई सारे ग्रीन करके ऑटो हमें नज़र आ रहे हैं।